सामने में एक एयरटेल का बैनर लगा हुआ है जिसके नीचे एक बिल्डिंग है।

चट्टानों के ऊपर भी पौधे निकल आए हैं।

जैसे व्हाइट हल्के ब्राउन डार्क ब्राउन कलर से--

कांच के अंदर है यहां एक पंखा भी लगाई गई है।

एक चेयर भी दिखाई दे रहा यहां पे ब्लू कलर का गेट लगा हुआ है।

प्रिंटिंग मशीन के ऊपर एक वाइट कलर का पेपर भी रखा हुआ है।

जहां पे बहुत सारी तारे भी हैं दरवाजा भी दिखाई दे रहा--

सामने में दो व्यक्ति खड़ा नजर आ रहा है उसके बगल में एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

एक टीचर भी दिखाई दे रही है यहां पे ब्लू कलर का नोट बोर्ड भी लगा हुआ है।